पौधा औधा कुल अच्छे से जाम गइल बा बहुत सारा पेड़ ह।

गार्डन के ह कही अच्छा जगह के सारनाथ के गार्डन के बुझाता पूरा घास वास जाम गइल बा पूरा बलब लागल बा बोर्ड बा बहुत सारा पेड़ बा आदमी होने एगो खड़ा बाड़न जा ऊपर बादल -वादळ लागल बा पूरा अच्छे से बादल वादळ --

मशीन के पाइल रखल बा सामान रखल बा।

नीचे बहुत सारा घांस जाम गइल बा।